दे रहे हैं रास्ता पथरीला दिख रहा है।

कुछ लोग भी नजर आ रहे है।

ऑरेंज कलर के कांच लगे हुए हैं।

नीचे बॉक्सर बॉक्स में भी कलर दिख रहे हैं।

यह चित्र एक किसी माल का चित्र लग रहा है।

यह चित्र एक डेंटल क्लिनिक का दिख रहा है।

एक चेयर भी नजर आ रही है।

सारी किताबें रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

अपने धर्म के कपड़े पहने हुए हैं।

और एक पाइप भी दिखाई दे रहा है।

पीछे बैकग्राउंड में फूल बने हुए हैं।

और वह एक काले रंग की--

रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।